मुझे इस फोटो में कच्ची ईंट नजर आ रही--

मुझे इस फोटो में कच्ची रोड नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो में एक कच्ची रोड नजर आ रही--

मुझे इस फोटो में एक्सरसाइज वाली मशीन नजर आ रही--

मुझे इस फोटो में पर्स नजर आ रा--

मुझे इस फोटो में पंखा नजर--

फोटो में ऑफिस नजर आ रही है मुझे इस--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

टो में पाइप नजर आ रहा है।

पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।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

मुझे इस फोटो में पार्क नजर आ रहा हैं मुझे इस फोटो में बाउंड्री नज़र आ रही --

मुझे इस फोटो में खंबा नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में हॉस्पिटल नजर आ रहा आ--

मुझे इस फोटो में कांच नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में पंखा नजर आ र--

मुझे इस फोटो में इंडियन ऑयल नजर आ रहा है मुझे--

टो मैं दो लोग नजर आ रहे है मुझे इस फोटो में कांच नजर आ रही है मुझे--

ये इस फोटो में घर भी नजर आ--

ब्रैकेट नजर आ रहे हैं मुझे इस--